ये दृश्य एक ग्राउंड का दिख रहा है।

यहां दो ट्रेक्टर खड़े है जो लाल कलर के है।

एक लड़का है जो की मास्क लगाए हुए है।

तस्वीर एक बस स्टॉप की है जहाँ बहोत सारे लोग --

एकेडेमी की दिख रही है।

नीचे एक कुर्सियाँ रखी है लाल रंग की।

जिसपे लिखा है भव्या मार्ट ।